इसके बाएं तरफ में कुछ कौवा है और इसके दाएं तरफ में घास है। और उसके सामने तरफ में पाछिल से गिरा हुआ है। यह कैमरे की तरफ में देख रहा है।